मशीन खुदाई कर रही हैं और कुछ लोहे के सरिये जमीन में गाड रही हैं पहाड़ों की खुदाई हो रही हैं ।

दो विज्ञापन बैनर वाले है और दुकान की शटर की बगल मे कुछ हरे कलर की दीवाल पर लिखा भी हुआ है।

यह एक रेड कलर का रिक्शा है जिसपे रेड रेड कलर मे ही ओम छपा हुआ है।

एक लड़का है हेलमेट पकड़े इ आगे की ओर जा रहा है और उसके पीछे एक और कोई आ रहा है और पेड़ की टहनी भी दिखाई दे रही है।

यह एक व्हाइट कलर का न्यू रिक्शा है जो शोरूम में रखा हुआ है और इसकी बगल में एक और ब्लैक रिक्शा रखा हुआ है।

हॉस्पिटल में एक मरीज बहुत गंभीर हालत में लेटा हुआ है आस-पास कोई भी मरीज नहीं है हॉस्पिटल में पर्दे टंगे हुए है और लाइटों का उजरा धीमा-धीमा सा आ रहा है।

एक बहुत बड़ी कांच की बिल्डिंग है जिस पर एक बहुत अच्छा लोगो बना हुआ है और चारों तरफ से कुछ खिड़कियाँ भी खुली हुई है।

एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें तीन-तीन पंखे टंगी हुई है और वह रॉड रॉड पर पर टंकी है जमीन पर नि-ति-न एक लाइन से चटाई बिछी हुई है।

जिनका कलर मिट्टी कलर जैसा है सामने एक अलमारी है जिसमें कुछ डिब्बी वगैरह भी रखी हुई है और हॉल का रंग सफेद है।